उसके पास छः सात गुब्बारे भी हम देख रहे है।

है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है | बड़ी बड़ी दिख रही है हमें ।

यो पहाड़िया है या फिर पहाड़ी इलाका है। हमें नदी भी दिख रही है। बीच में थोड़ी सी और हरी झाड़ियाँ दिख रही है हमें हरे - हरे पत्ते भी दिख रहे है। पेड़ भी दिख रहे है।

पत्थर भी दिख रहे है। बतेरे बड़े- बड़े। हरी पत्तियां भी --

यो समुन्द्र भी दिख रहा है। समुद्र के ऊपर हमे पुल दिख रहा है।

यो के क्या नाम है एक चर्च है । यो ऊपर से रेड कलर कि है इसकी छते और ये ब्राउन कलर कि कुछ दीवार और आसमान दिख रहा है। पत्ते दिख रहे पेड़ भी दिख रहा है हमें --